और उसके पीछे एक लड़का खड़ा हुआ जिसे ने जो गिटार रखे हुए उसका चेहरा नहीं दिख रहा--

इस इमेज में मुझे एक उम बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो कि दो मंजिल है उसे पर लिखा एच.डी.एफ.सी. बैंक और नीचे बहुत सारी स्कूटि और मोटर साइकिल रखी हुई है और द एक दो तीन चार पांच आदमी दिखाई दे रहे हैं--

इ इमेज में मुझे एक कपड़े की दुकान दिखाई दे रही है दो ब्लैक कलर के स्टूल रखी हुई दिखाई दे रहे--

आ बहुत सारे कपड़े रखी हुई दिखाई दे रहे हैं तीन साड़ि -यां टंगी हुई दिखाई दे रहे हैं और एक डॉल कुर्ता पहने हुए खड़ी दिखाई दे रही है और फ़्रॉके हे दिखाई दे रही हैं।

इस इमेज में मुझे मुझे फूलों की दुकान दिखाई दे रही है उसे पर फूलों की पतली पतली मालाए टंगी हुई दिखाई दे रहे है।

और दुकान के उसे पर रोड पर एक बस दिखाई दे रही है।

इस इमेज में मुझे एक कार दिखाई दे रही है कार में फूलों की डेकोरेशन है और जिसमें डेर --

इमेज मेंमुझे एक रोड दिखाई -दे रहा है रोड पर एक स्कूटी और एकऑटो और दो एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और उस पर बहुत सारे पोस्टर लगे हुए चिपके हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में मुझे एक कोचिग दिखाई दे रही है जिस पर एक सर पढ़ाते हुए दिखाई दे रहा है। सामने बोर्ड लगा हुआ है रेड कलर की कुर्सी रखे हुए है उन पर बहुत सारे लड़के और सामने लड़किया बैठी हुई दिखाई दे रहे है

इस इमेज में मुझे पानी की धारा बहती हुई दिखाई दे रही है और एक जंगल सा दिखाई दे रहा है उसमें बहुत सारे--

पेड़ लगे हुए हैं और पानी बह रहा है बड़े-बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं जो की ब्लाक कलर के हैं।